बहोत सारी टेबल्स रखी हुई हैं एक अंकल ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इसमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं वो फूल वगैरह भी लगे हु --

एक बड़ी सी रस्सी बंधी हुई है जो एक येलो कलर की दीवार भी दिख रही है।